ये एक स्कूल है न्यूटन स्कूल है यो सरस्वती माता की फोटो है भीत को ऊपर।

झटका मशीन साइड में लिख रखा है शटर बंद है दो शटर है हरे रंग के लाइट लाग रही है रात का टाइम है पीले रंग की सफेदी दियोरी है।

यह एक रात का माहौल है जिसमें डी_जे लग रहे हैं।

छतरी लाग रही है जिसे डिश टी_वी बोलते है सफेद रंग का पेंट --

पोल हैं पोल पे तार जा रहे हैं लाइट का एक पोल है घर है घर में पीले और संतरी कलर की सफेदी हो रही है नेट बिछ रहे हैं।

ये एक लड़की बैठी जिसने पीले कलर का कुर्ता गले में चुन्नी डाल रखी है एक मशीन के भीतर जाली दे री है।

ये एक माता की रैली निकल रही हैं बहोत सारी सजावट की हुई है स्पीकर लग रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग स्कूल की है रूम जिसे कलर का पेंट हो रहा है।

साथ में काठ के सामान रखने के हैं ऊपर बहोत अच्छी लाइटिंग है।

जो रोड है रोड पे बहुत सारे व्हीकल हैं।

एक औरत मुंह ढक रही है सामान पकड़े हुए है मेट्रो स्टेशन है टेंपू है टेंपू का रंग--

ऊपर तीन आदमी बैठे हैं जिसने

ब्लू कलर की प्लास्टिक की ट्रे हैं लाइट लग रही से इसमें शीशे में सूर्य का प्रकाश आ रहा है वायर जल--